आम का पेड़ लगा हुआ है। उसके नीचे एक कुर्सी डली हुए है और एक बाल्टी रखी हुई है। थोड़े आंगे पेड़ और लग हुआ है उसके नीचे भी कुर्सी रखी दिखाई दे रही है।

और घर के बाहर एक गेट लगा हुआ है और तार्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हरे कलर के खोका रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स देवरिया --

और घेरा से बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है।

बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे है मोटरसाइकिलो पे बैठे हुए।

इस इमेज में मुझे एक किचन दिखाई दे रही है जिसपे दो शेफ दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में मुझे एक दूकान दिखाई दे रही है। दूकान के अंदर बोहोत सारी टॉफीया रखे दिखाई दे रहे हैं। कुरकुरे टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।